एक पीला रंग के घर है जो करकट दिया हुआ है।

एक वाइट कलर का दिवाल है जहां पे एक लड़का वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है ब्राउन बैग टांगा हुआ है।

बाइक लगा हुआ है हर एक कलर का।

घड़ी लगा हुआ पोस्टर टांगा हुआ है।

स्टील का रेलिंग रखा हुआ है जहां पे दो व्यक्ति खड़ा है एक काला शर्ट पहना हुआ है।

पोस्टरस लगा हुआ है एक कमरा खुला है।